इम एक लड़का है जो की रेड कलर के बलून से दीवाल सी है दोनों साइड़ बीच में वह चेयर डाल कर बैठा हुआ है पैर के ऊपर पैर रखे हुए है व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने हैं ब्लू कलर का पेंट पहने है और पैर में एक चप्पल पहने है एक पास में डली हुई है।

इसमें दो लड़के हैं जो कि चाय पी रहे हैं कप है वाइट कलर का एक लड़के ने वाइट कलर की शर्ट पहने हैं वह फोन रखे हुए हैं ब्लूटूथ रेड कलर के उसके गले में ब्लूटूथ डली हुई है।

उन्होंने स्लेटी कलर का पेंट पहना हुआ है एक शर्ट पहने हुए हैं आसमान दिख रहा है पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं रोड दिख रहा है जहां पर रोड पर कचरा डाला हुआ है।

एक लेडिस है जिसने ब्लू कलर की साड़ी पहने है तोता कलर की एक पॉलिथीन रखे हुए हैं और नीचे एक लेडिस बैठी हुई है जिसमें लड़का बैठा हुआ है जो फोन पर बात --

इसमें एक घर है जो तोता कलर का है और यहां पर एक लेडिस बैठी है जो की ब्लू कलर की कुर्ता कुर्ता पहने है लेग्गिंग पहने है और बहुत सारे अंकल है।

और नीचे पजामा और बैंगनी कलर की चेयर है उनकी और येलो कलर से डेकोरेट किया गया है रेड कलर भी है और पिक क्लिक हो रही।

और एक बोर्ड लगा हुआ है जो की वाइट कलर का है और डार्क ब्लू कलर के यहां पर बहुत सारे लगे हुए हैं बोर्ड से डंबल डले हुए हैं पास में जो की ब्लैक कलर के उसकी बॉडी दिख रही है बहुत अच्छी।

पिक्चर में बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि पढ़ रहे हैं अपनी-अपनी बुक रखे हुए हैं छोटा बड़ा लिखा हुआ है इ से इमली बनी हुई है।